मुझे इस फोटो में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो में दरवाजा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में कनक पैलेस दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में दो गधे दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में ट्रक दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में एक कैंची दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।